--बच्चा यहाँ पर झुला झूल रहा है और एक बगीचा अच्छा लग रहा है यहाँ पे झुला अच्छा लग रहा है।